यह एक पार्क का तस्वीर है। जहाँ पर की दो झूले दिखाई दे रहे हैं तथा चार लोग दाएँ ओर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें से की दो पुरुष हैं तथा दो स्त्रीयाँ हैं।

यह एक फैक्ट्री का दृश्य है जहाँ पर कुछ मशीने कार्य कर रही है तथा इन मशीनों के पास एक आदमी जोकि सफेद शर्ट तथा काली पैंट और चप्पलों में खड़ा है

यह किसी स्कूल का परवेश द्वार है उस स्कूल का नाम एसडी पब्लिक स्कूल है ।

तथा इस कमरे के अंदर बहोत सारी लाइटें जल रही हैं और कुछ लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।